नीचे फल भी रखे हुए हैं जैसे केला और संतरा।

यह चित्र किसी जिम का है जिसमें कई सारे जिनके इक्विपमेंट रखे गए हैं।

बच्चों के खेलने के लिए झूले भी बने हुए हैं।

खम्भो का कलर हरा है तथा छतों पर सफेद कलर का इस्तेमाल किया गया है।

इस चित्र में कई सारे बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

ऊपर कुछ झालरे भी टंगी हुई हैं।

इस चित्र में कुछ लोग एक कार को रिपेयर कर रहे हैं।

कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं।

यहां पर घास काफी छोटी छोटी है।

नीचे हरे करल कलर की मैट भी पड़े हुए हैं।

चित्र में कई सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।